शायद इसके पीछे तालाब है।

यहाँ एक घर की तस्वीर है जहाँ एक कार रखी हुई है।

यहाँ बहुत सारी मालाएं दिखाई दे रही हैं।

इसके अलावा इसके आस-पास कुछ हथौड़ी जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं।

यहाँ एक बागीचे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

शायद यहाँ कोई चीज को इसका सल्यूशन हो रहा होगा।

यहाँ एक किसी दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का बोर्ड लगा हुआ है।

दृश्य में एक ब्रिज दिखा ब्रिज दिखाई दे रहा है। ए --

यहाँ एक रोड दिखाई दे रहा है जिस --

जोकि भारतीय सरकार या किसी भी देश की सरकार ने बनाया होगा।

यहाँ एक शॉप दिखाई दे रही है।